साइड में मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

और पौधे भी दिख रहे हैं।

मूर्ति के उपर एक चुनरी ओढ़ाई हुई है।

और साइड में ही मुझे एक पेड़ भी दिख रहा है।

जोकि सफ़ेद कलर की है। आसपास मुझे --

कुछ फेसिअल किट दिख रही है इसमें मुझे परदे भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे नीचे अ कुछ घड़ी करके कपड़े पड़े हुवे हैं।

इसमें मुझे ईटे भी दिखाइ रही हैं। ईटें चॉकलेटी कलर की दिख रही है।

उपर की तरफ मुझे नीला आसमान दिख रहा है।